वा बुद्ध के जेसी दिखाय दे रही है जो की देखिऐ गोल्डन कलर की और इसी सजावट गोल्डन कलर की है जो की देखने में काफी अच्छा लग रहा है और बहुत--

ये देखिऐ एक ची पौधे की पत्तियां को लेकर बेच रहे है और देखिऐ ये पत्तिया बहोत हरी-हरी दिखाई दे रही हेऔर पीछे देखिए बहुत सारे फुल --

ये देखिऐ एक छोटे से स्टाल पे जो चाट है लगा हुआ है और देखिऐ एक आदमी जो चाट--

इ-रिक्शा लगे हुए है जैसे लग रहा है इ-रिक्शा का स्टेड है और देखिये इधर यात्री भी अपना बैग लिए हुए इधर की और --

और देखिए सामने और वह चर्च की और देख रही है और एक जेन्स है जो अ कार छोटा बच्चा ड्राइव कर रहा--

लड़के लड़कियां औरत भी बैठी हुई है जो की झूले का आनंद ले रही है और यह देखने में भी काफी अच्छा लग रहा --

ये देखिए ये किसी हॉस्पिटल का सीन दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखिऐ सब ग्रीन कलर की लेडीज पहने हुई--

और ये नाव रखा हुवा है और ये कुछ --